यह एक गाड़ी है जिस गाड़ी --

टैर निकाल रखी है फ्रंट वाले और इसका बोनॉट खोल रखा है।

यहाँ पर वर्कशॉप में यह गाड़ी आयी हुई है यह आंध्रप्रदेश की गाड़ी है।

और यह एक घाटी के रूप में पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पर किताबे खरीदने के लिए आये हुए हैं।